यहां सामने स्टेज पर शादी हो रही है नीचे बहोत सारे पीले रंग--

यहां पर हरी भरी घास उगी हुई है।

साथ ही बहोतसी बोरियां पड़ी हैं जो की सफेद रंग की हैं।

लोग अपने बच्चों को लेकर आए हैं जिसमें कुछ माँ --

होलसेल रेट से मिलते हैं यहां दो ट्रैक्टर लगे हैं।

ये फोटो एक पहाड़ी इलाके की है यहां पर--